यहा पर सामने मे एक घर दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी खिड़किया लगी हुई है यहा पर एक नीले कलर की बोर्ड लगी हुई है जिसमें कुछ लिखा हुआ है।

ए करा बड़खा से दुकान ह दिखत हे जेमा कत्ता कन कपड़ा दिखत हे।

दुखापोत्री सारे ओ कपड़ा पहने नीचे कट्टा बा बाई की स्कूटी दिखत है। उपर कट्टा कपड़ा दिखाते है।

यहाँ पर सिने मे एक बड़ी सी मकान दिखाई दे रही उपर मे एक छोटासा बोर्ड लगा हुआ है।

दीवार मे कुच्छ रेड कलर सा लिखा हुआ है यहा पर दो खिड़किया दिखाई दे रही है नीचे मे कुछ कचरे दिखाई दे रहे है।

ये करा का गार्डन जिसमे बने है कट्टा काम दो तीन धा झूला लगे हुये बढ़का बढ़का पेड़ न दिखाते है जे मा ना नान आ साइड लागे है एक रस्ता गए है।

यहा पर एक लोहे का पाइप रखा हुआ है और एक खंबा लगा हुआ है बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

जिसने दिखत ए जेमा ले धुआँ निकलत हेवे।